चेर रखी हुई है टेबल और चेर पर वाइट कलर का कवर चढ़ा हुआ हेगा और यहाँ साइक मैं कुछ लोग है।

और आसपास काफी सारे पेड़ लगे हुए है। फॉधी लगे होएंगे--

नदी मैं एक नाव भी हेगी नाव पर और बोर्ड है एक कुछ लोग हेंगे जो नाव पर हेंगे नाव चला रहे है।

बहोत सारी मछलीया रखी हुई है और सईद मे एक तराजू रखा हुआ है यहा पर और कुछ लोग खड़े हुए हेंगे।